बोहोत सारे आदमी और औरतें दिखाई दे रहे हैं। पेड़ों को लाइटो से सजाया हुआ है।

इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं ये एक चर्च के अंदर का दृश्य है यहाँ पर बहौत सारे रॉड लगे हुए हैं और पंखे भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक काउंटर रखा है। काउंटर के ऊपर भी समान है और एक कुर्सी पड़ी हुई है। किनारे की तरफ एक फ्रिज रखी हुई दिखाई दे रही है और एक लड़का भी खड़ा हुआ दिख रहा है।

स्टूल भी रखा हुआ दिख रहा है। यहां पर एक सीढ़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। जमीन पर बोहोत सारी कॉपियां भी रखी हुई दिख रही हैं।

दृश्य में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए ये एक बस खड़ी हुई है बस का रंग लाल है। बस के पीछे लिखा हुआ है साईं टूर एंड ट्रैवलस ।

कि इस दृश्य हम देख पा रहे हैं यहां पर ये तीन डिब्बे रखे हुए हैं जिसमें कि पीले लाल और सफेद --

फूल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन फूलों की हरी हरी टहनियाँ भी दिखाई दे रही हैं।

जैसा कि इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं यहां पर ये पानी भरा हुआ है और बॉन्डरी बनी हुई दिख रही है जमीन पर कहीं कहीं पे घास ईंटे दिख --

इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं यहां पर देखिए बोहोत भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है बहुत सारे आदमी और और-